तस्वीर में एक जिम दिखाई दे रहा है एवं ट्रेडमिल मशीन भी है।

एक आदमी है और बहुत सारे पोस्टर है बॉडी बनाया गया है उसमें।

एक कोल्डड्रिंक का बोटल भी है और बहुत सारे कुर्सियां हैं।

बहुत सारी सीढ़ियां हैं यहां पे जोकि नीला कलर का है और आसमान भी है।

इस तस्वीर में एक दुकान है दुकान के अंदर मे एक आदमी बैठा हुआ है उसके हाथ में मोबाइल है।

हरा रंग का बहुत सारा डब्बा है यहां पे दो मोटरसाइकल भी हैं।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में लिखा हुआ है एच_पी ।

पंडाल के बगल में दुकान जैसा है जिसमें लिखा है होली डे हाउस और उसमें शटर लगा हुआ है जो नीला कलर का है।

लाईन का तार भी दिखाई दे रहा है यम रोड भी है और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि लाल टोपी पहन के रखा है।

एक स्कूटी भी है और एक मंदिर है।

एक झंडा है और केला का पत्ता भी है और बहुत सारे यहां बिल्डिंग है।

बहुत सारे यहां पे बल्ब है जो कि जल रहा है।

इस तस्वीर में के विद्यालय दिखाई दे रहा है जो ऊपर में लिखा है।